और यहाँ पे देखिए कुछ गार्डन टाइप का एक फील आ रही है और ये फोटो काफी अच्छा और बेहतरीन लग रहा है। तो ये काफी अच्छा फोटो है।

सोच रहे हैं कुछ बाते यहाँ पे देख सकते हो टाइल्स लगी हुई हैं जोकि व्हाइट कलर की हैं जोकि लाइट के चक्कर में चमक रही हैं। लाइट से ये चमक के --

साथ ही साथ आप देख तो ये एक --

दॄश्य का है। यही इस फोटो में दर्शाया गया है। यही --

कोई साधु की मूर्ति है जो कि --

भगवान के कार्य वो कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते ही की कुछ मूर्ति टाइप की बनी हुई है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ लोग खड़े हुए हैं। कुछ बहोत सारी चीजे हैं।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

यहाँ पे आप एक चीज मत देखो कि अअअ यहाँ पे आप एक चीज मत देखो कि हम्म्म यहाँ पे --

इस फोटो में आप देख सकते हो कि चेयर्स हैं जो कि रेड कलर की हैं। जो देखिये अलग-अलग अलग-अलग डाइमेंशन की स्टाइल्स में जमाया गया है।